यह चित्र एक रोड का दिख रहा है जहाँ एक मोटर बाइक खड़ी हुई है एक पेड़ लगा है पीछे की और एक लोहे का गेट दिख रहा है।

ये चित्र एक कार्यालय स्थल जैसी जगह या संस्था का दिख रहा है जहाँ सफेद रंग पुता हुआ है आसमान में बादल दिख रहे --

आस-पास पेड़ दिख रहे हैं हरे रंग के बिजली का तार और आसमान भी नजर आ रहा है बादल--

एक कार सफ़ेद रंग कि खड़ी हैं और एक दो पेड़ हरे रंग के और आसमान में बादल दिख --

यह चित्र एक जगह का है जो चर्च दिख रहा है काफी सारी सीढ़िया नजर आ रही है।